गार्डन दिखाई दे रहा है।

इसमें हमें दीवारों पर ही कु--

ड्राइंग रूम की नजर आ रही है।

गैराज का दिखाया जा रहा है।

अह इसके ऊपर प्लस का सिंबल भी है।

खड़ी हुई दिख रही है।

गेट हरे रंग का है।

दृश्य हमें किसी पार्किंग एरिया का लग रहा है।

इसमें हमें बहोत सारी वर्कर्स दिखाई दे रहे हैं।

यहां हमें पीले रंग का--

इसके बहोत टायर्स लगी है।

फंक्शन की लग रही है।

उसके ऊपर हमें नाव भी नजर आ--

यह फोटो हमें किसी--